यह गार्डन है गार्डन के पीछे बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ लोग सड़क के किनारे दिखाई दे रहे हैं बाइक दिखाई दे रही हैं एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा

यह एक स्टेट बैंक ए_टी_एम मशीन है बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं एक बाइक दिख रहा है एक कमर्शियल रिक्शा दिख रहा है।

औरत के द्वारा पेड़ पौधों को पानी दिया जा रहा है गार्डन के पीछे कुछ बिल्डिंगस दिखाई दे रही है।

यह एक गोदाम है जहाँ बोरियों में कुछ रखा हुआ है।

खिड़कियां दिखाई दे रही है डेक्स दिखाई दे रहे हैं बेंच दिखाई दे रहे हैं और एक मेम दिखाई दे रही है।

यहाँ दो दुकाने दिख रही है एक दुकान का नाम ए_वन_एन_जे_बी है।